एक होटल है जहाँ पे कुर्सी उर्सी लगा हुआ है। टेबल लगा हुआ है और पंखे भी हैं और एक सीमेंट टाइप का मतलब की पेड़ बना हुआ है और जहाँ पे सब कुछ समान उमान रखा हुआ है टेबल पे जो भी जरूरत हो।

गद्दा है और फ्री अथी शीशा भी है पर्दा भी है और दीवार भी --

एक घर है जो उ जिसका छत रहती नही है जिसका जो कररकट का बना --

रेलगाड़ी जो जा रहा है और एक बड़ा सा पेड़ है जिस पर पोस्टर लगा हुआ है। एक कुर्सी भी है और बहुत बड़ा बड़ा उस साइड --

और जे ए एक जहाँ पे है वहाँ पे खिड़की है बहोत बड़ा-बड़ा और रूम --

ऊपर बना हुआ है उनका मूर्ति और जो-जो मतलब सामान बेचने वाले हैं और बहुत सारे दुकान भी लगे हुए हैं।

और जो बगल में दुकान भी सभी है और दो आदमी जाे खड़े हुए है। एके साथ --